जोकि ब्लैक और व्हाइट कलर का घोड़ा दिखाई दे रहा है और --

यहाँ तस्वीर किसी रोड की तस्वीर दिखाई पड़ रही है।

यह तस्वीर किसी चर्च की दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर मैं कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नदी की तस्वीर है।

यहां पे बोहोत ही गाड़ी खड़ी हुई हैं।

और ऊपर दो पंखे लगे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक ट्रैन छोटी सी है जो बच्चों की ट्रैन है।